मुझे इस फोटो में एक मूर्ति दिखाई दे रही है।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

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक रूम दिखाई दे रहा है।

एक घड़ी दिखाई दे रही है।

ये इस फोटो में लाल फूल दिखाई दे रहे हैं।

लाल बादल दिखाई दे रहे हैं।